कपड़ा रखा हुआ नज़र आ रहा होगा --

एक वैन है जिसका नंबर प्लेट बी.आर. जीरो चार एन फाइव सिक्स वन फॉर है।

के ऊपर खपड़ा से छाया हुआ है --

और एक काफी पुराना पेड़ आपको पे दिखाई दे रहा होगा जो की बरगद --

ये किसी मेले का तस्वीर है जो की काफी ही बेहतरीन बनाया गया और इसमें --

और कुछ व्यक्ति आपको नाचते हुए नजर आ रहे कुछ व्यक्ति बैठे हुए आपको पीछे की ओर नजर आ रहे होंगे।

आपको पढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे होंगे जिसमे एक जेंस अपना मोबाइल खोलता --

ऐसा लगता है की वो एक खजुर का पेंड़ है।

यहाँ पर काफी धुम-धाम से पुजा करते हुए बैठ कर नजर आ रहें होंगे और काफी छोटे-छोटे बच्चे आपको यहाँ पर देखने को मिल रहें होंगे।

ये किसी टूरिज्म कैपिटल ऑफ़ महाराष्ट्र का तस्वीर है जो की कुछ टुरिस्ट लोग का है।

योगा और स्टिचिंग करते हुए नजर आ रहे हैं और ये किसी शाम का तस्वीर नजर आता है।

ये किसी एक प्लेग्राउंड का तस्वीर है आप लोग को नजर आएगा जो कि शहर का स्टेडियम टाइप में प्रतीत होता है जिसमें आपको कुछ व्यक्ति आपको --

जो की कॉलेज आपको गेट खुला हुआ नज़र आ रहा होगा और सामने में फ्रंट में एक --